यह एक मंदिर है इस मंदिर में फूल लगे हुए हैं दिया लगा हुआ है बुद्ध दिख रहे है।

एक रूम है इस रूम में टेबल है चेयर है बुक है कूलर है।

गेट है बादल दिख रहे हैं और वायरिंग है।

और यहां पे वर्कर्स है दो लोग वर्क कर रहे हैं।

यहां पर सिक्योरिटी गार्ड है चेयर रखी हुई है बैलून से सजा हुआ पंडाल है पिक और--

बाजू में छोटे छोटे पत्ते उगे हुए हैं उसने गोगल लगाई हुई है।

ये बहुत बड़ी बिस्किट आर अवेलेबल इ भी लिखा हुआ है यहां पे सुपर फाइन बेकरीज का बेकरी का नाम है।

मिलेगा ऐसे भी लिखा हुआ है आनंद ऐसे नाम है इस --

और बादल दिख रहा है बाजू में एक बिल्डिंग दिख--

यहां पर टेबल और कुर्सियां लगी हुई है रसगुल्ला गुलाब जामुन--

अ स्पेशल थाली ऐसे लिख के लगा हुआ है।